और इसके बाजू मे एक गाँव टाइप का लग रहा है और पेड़े भी लगे हुए है और अ खाई टाइप की भी दिख रही है और उसके पार बहोत सारे एक जंगल टाइप के दिख रहे--

यहाँ पर मुझे पहाड़ दिख रहा है पहाड़ पर एक पेड़ लगा हुआ है पेड़ पे कुछ बंधा हुआ है।